नीचे एक नीले कलर की स्टेज है और इसमें लाल कलर की एक फ्रॉक और एक ग्रीन और वाइट कलर की है ऊपर खुला चारों तरफ से दीवाले हैं चारों --

सामने एक बड़ी ईमारत है उसमे कुछ पाइप कुछ खम्भे पिलर लाल कलर के सामने एक मूर्ति बनी है सफेद कलर की और चारो तरफ से नीले कलर की टाइल्स लगी हुई है।